जेंरल्ली सैलून की तरह है। सैलून जो है अभी के समय में --

यहाँ पे काफी जगह देखने मे अच्छा लग रहा है और ऐसा नजारा जो कि मंदिर के आस-पास के एरिया में देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है।

जो कि छोटा-सा फॅमिली को लेके दस से पंद्रह सीटर ये गाडी होता है जो कि कुछ आदमी को लेके यह पिकनिक मानाने या घूमने के --